यहाँ पर एक व्यक्ति को देखा जा सकता है जो सामने से आ रही एक महिला को सेनेटाइज कर रहा है।

और इसकी दूसरी तरफ भी कुछ दफ़्ती वगैरह है।

यहाँ पर तीन चांदी के बहुत अच्छे -अच्छे डिजाइन के कुछ समानों --

पालथी मारकर के बैठा हुआ है एंड सामने से भी एक और व्यक्ति दिखाई दे रहा हैं।

और अगल -बगल में बहुत सारी बड़ी -बड़ी मछलिया भी लगी हुई देखी जा सकती है।

यहाँ पर बहुत सारे फटाको को एक साथ फूटते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है ।

और यहाँ पे सामने में एक बहुत बड़ा सा टेबल लगा हुआ है जिसके ऊपर कुछ मूर्ति जैसी लगी हुई है ऊपर बहुत सारी--

कुर्सी लगी हुई दिखाई दे रही है यह देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है एंड सामने कुछ लोग भी है।

और अ बाहर से एक रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है और बाहर एक जाली लगी हुई है जो की अभी बंद दिखाई दे रही है ।